और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो नीला कलर का बोर्ड है और बहुत सारे खिड़कियाँ भी बनी है बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है ऊपर लाइट लगी हुई है।

बोट के अन्दर एक खंबा लगा हुआ जिसमे लाइट जलती हुई नजर आ रही है यहा पे एक औरत माँ एक औरत दिख रही है जो काले कलर का पर्स टांगी हुई है।

यहा पे टोकरी मे आलू वगैरे रखे हुए है एक स्कैनर लगा हुआ है दीवारपे ऊपर केले टांगे दिख रहे है और एक यहा पे वजन करनेवाला काटा रखा गया पानी का बोतल रखा हुआ नजर एक टोकरी मे नींबू दि दिख रहे --

उदघाटन टाइप मे लग रहा है यहा पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है यहापे अ सब आदमी औरत यहापे खड़े हुए नजर आ रहे है ऊपर कि गैलरी बहुत ही प्यारी बनाया गया है।

पीछे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है यहा पे पीले कलर का बास्केट दिख रहा है और मच्छी वजन करनेवाले काटा भी रखा है यहा पर--

यहा पे एक दो मंजिली का घर बना हुआ है नीचे एक बैंक है बैंक का नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है बाहर बहुत सारे कुर्सी लगी हुई है।